इस पिक्चर को देख कर हम ये कह सकते है की यह एक बहुत ही पुराना सा फोटो है यहा पर कही सारे बड़े घर भी दिखाई दे रहे है बहुत सारे बड़े बड़े घर है और बहुत सारे छोटे छोटे घर भी है।

इस पिक्चर को देखकर हम ये कह सकते है की यह एक मंडप है मंडप काफी सुंदर सजाई गई है पीले रंग की फूल की सैया काफी अकृषित नजर आ रही है और पीछे बैंगनी रंग का पर्दा भी दिया गया है।